छवि में एक चर्च दिखाया गया है चर्च के गेट पर नीले रंग के बोर्ड पर लिखा गया है चर्च का नाम।

छवि में एक छोट-सा हॉस्पिटल दिखा रहे हैं जिसप-- जिसके बोर्ड पर लिखा है ध्रुति जीवन।

घर को जाने के लिए सीढ़ियां पहले चढ़नी पड़ेगी।

छवि में यह किसी का शादी का मंडप देखने को मिल रहा है मंडप का चेहरा काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है।

साइड में काफी लोहा लक्कड़ पड़ा हुआ है और गंदगी मची हुई है। साइड में पेड़-पौधे भी हैं।

मे एक मेला देखने को मिल रहा है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के झूले लगे हुए हैं।